उनमे लाइटे लगी हुई है सामने बैनर लगे हुए हैं सीडी --

लिखा हुआ है फैब्रिक क्लीन लॉन्ड्री सर्विसेस

सफेद और अलग-अलग कलरों में हैं डिजाइने बिच में --

हिंदी में भी लिख रहा है ए.सी. सैलून उसके बाद सामने कुर्सियां --

खिलाड़ी ऑन है जो खेल रहे हैं।

हमारे सामने घर है जो सफेद कलर का है पीछे की इमारत है जो --

यहां हमारे सामने स्कूल है जिसमें दीवाल क्रीम कलर की और लाल कलर की है।

जिन्होंने जैकेट पेन रखा है।

जो खुले हुए हैं नीचे सामान रखा हुआ है कार का।

टोइ है जो अलग-अलग कलरों में है।

यहां हमारे सामने बहुत पुरानी मूर्तियां हे।

यहां पर हमारे सामने खेत हे जो हरा-भरा है उसके अलावा सामने --

शिल्डी है सामने एक स्टूल रखा हुआ है।

पेड़ ओन हें सामने बड़े और छोटे और उसके अलावा खुला आसमान हें।

यह हमारे सामने बलून ओन हैं और जो लाल कलर के और --

वह लकड़ी के बास लगे हुए हें सामने कचरा है और सामने --

और उसके अलावा एक सामने में बच्चा खड़ा हुआ हे साइकिल है और रोड --

ऑरेंज कलर की पर्दे लगे हुए हैं उसके अलावा मम दीवाल --

यहां हमारे सामने बहुत सारे टमाटर हे।

नीले अक्षरों में लिखा हुआ है सामने बच्चे उन बैठे हुए है कुर्सियों --

और हमारे सामने ए.टी.एम. है और ऊपर बोर्ड है।

यहां हमारे सामने मैदान हैं उसमें हरी घांस है और --

अं औ सामने व्यक्ति है जो खड़े हें और बड़े-बड़े हरे पत्ते उन्हें ह सामने --

नीचे आदमी औन हें और औरतें हैं जो और उसका एक व्यक्ति है जिसके हाथ में --

उसके अलावा सामने एक पेंट अअ एक व्यक्ति खड़ा जिसने काली पें --

डिजाइन वाली है उसके अलावा स्टिकर ओन है वाले जो स्माइली वाले हे सेल ओन टंगे हुए हैं।